ईंटे अ जमा रहा है बॉक्स के अंदर रखा है पास में दो वॉटर कूलर रखे हुए हैं।

अ डालकर जिसे काम कर रहे हैं और तीन आदमी खड़े हुए हैं इस तस्वीर--

और सेब अनार भी र दिखाई दे रहे।

अ लाल रंग का बोर्ड है और नीचे बड़ी सी दुकान है जिसमें दो आदमी खड़े हुए नजर आ रहे हैं सीढ़ियां बनी है और एक गाड़ी खड़ी हुई है।

और उसके नीचे के अह जो फिटिंग होती है वो दिखाई दे रही है।

अ मदन स्वीट्स का बोर्ड लगा हुआ है जो दुकान बन्द है और जो दुकान खुली है उस पर दीपक मेडिकोज लिखा हुआ।

और गुलाबी रंग की एक बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है दूर--

बड़े बड़े कार्टूंस ये बॉक्सेस रखें हुए हैं।

आंखों के जिन्हें कहते है और बहोत सारे कपड़े--

और दीवारों पर फ्रेम लगे हुए हैं पंख लगा है।

पानी के अंदर एक बड़ी सी नाँव दिखाई दे रहीं हैं।

अ और चार पांच छे लोग बैठे हुए नजर आ रहे है एक महिला और एक--

हमें जो यह दुकान नजर आ रही है उसके ऊपर शेड डला हुआ है और उसके ऊपर जो बोर्ड लगा है उस पर श्री श्याम --

इस तस्वीर में हमें एक बिल्डिंग के आगे एक पीली बिल्डिंग है उसके आगे महिलाएं खड़ी हुई नजर आ रही है सीढ़ियां गई हुई हैं।